नजर नजर दे रहे है और यह एक फ्रूट्स का शॉप नजर आ रहा है।

और ये एक शॉप सोफा सेट की है और सोफा का कलर सेट का चॉकोलेटी ब्लू --

यह एक बाजे का शॉप नज़र आ रहा है।

इस चित्र के अंदर एक रोड नज़र आ रही है और इस रोड के अंदर ट्राफिक जाम नजर आ रहा है और एक अंकल ब्रुश कर रहे हैं और आसपास बोहोत दुकान नज़र आ रही हैं। ये एक मार्केट के तरह नज़र आ रहा है।

और साथ मे झाडा उगे नज़र रहे हैं और आसपास घर और झाड़ा भी नज़र आ रहे हैं यह एक सुन्दर सी फोटो ली --

आसपास झाड़ा और एक ख पहाड़ियाँ और घर नज़र आ रहे हैं। यह एक बहोत सी सुंदर-सी फोटो ली गई हैं।

इस चित्र में एक शॉप नज़र आ रही है और शॉप में एक कुरकुरों का शॉप और शाम्पू वगेरा दिख रहा है।

इस चित्र के अंदर एक बाइ नज़र आ रही है और उस बाइक को मैकनिकल कर रहा जा रहा है।